यहाँ पर एक कैम्प लगा हुआ है कैम्प मे काफी सारे टेंट हाउस रखे हुए है।

कुर्सियों पर लोग बैठे हुए है। कुछ कुर्सियाँ यहाँ खाली भी रखी हुई है।

यहाँ पर थर्मोकोल का डिब्बा है डिब्बे के ढक्कन पर कुछ मछलियाँ रखी हुई है जिनमे बड़ी मछली छोटी मछली कई सारी मछलियाँ रखी है।

पार्क मे झूले लगे हुए है।